यहां बैंक मे लगता है ये पैसे इन्हीं के लिए आये है।

और बहुत से लोग बाग वाहानों से इधर उधर जा रहे हैं।

यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि --

यहाँ भोपाल सब में चीज है यहाँ पर एक कोरीडोर है।

यहाँ पर बहोत सारे झण्डे लगे हुए हैं।

यहाँ दिख रहा है मुझको कि यहाँ पर बकरियाँ लग खड़ी हुई हैं।

जब भूख लगेगी ये चरने जाएँगी ।

यहां मैं देख सकता हूं कि यहां पर महात्मा बैठे हुए हैं।

नाम में कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ मैं देख सकता हूंँ कि --

यहाँ पर कुछ लोग डांस कर रहे हैं।

यहाँ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर --

यहाँ मैं देख सकता हूँ कि --

और यहां पर यहां से देखते है तो लगता है यहां पर खेत है और इधर लेहसन भी पड़ा हुआ है।

और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का पोस्टर लगा हुआ है।

यहाँ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर एक होटल है।

यहाँ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मैच चल रहा है।

मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर नाप धरी हुई है तीन --

और उसके ऊपर सीधी के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है।

कुछ लोग खड़े होके फोटो खिंचवा रहे हैं।

मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोग वाग खड़े हुए हैं।

आप यहाँ पर कुछ बाबा जी खड़े हुए हैं बाबा जी के साथ गोरे लोग भी खड़े हुए हैं ।